यह फोटो किसी श्री महावीर अर्बन को ऑप बॅक लिमिटेड सोलापुर की पोस्टर की है जो रेड कलर का है एवं इसमें सफेद कलर से ये लिखा हुआ है।

यह फोटो आई.सी.आई.सी.आई बैंक की है के बाहर--

यह फोटो किसी महाविद्यालय की बाहर की है जिसके बाहर कुछ बड़े पेड़ कुछ छोटे पौधे हरे हरे लगे हुये है।

यह फोटो एक रेस्टोरंट की है इसमे कुछ कुर्सिया कुछ टेबल रखे हुये है टेबल्स पर कुछ शामन रखा हुआ है एवंम इस रेस्टोरंट मे --

जिसमें से उस कारखाने का धुँवा निकल रहा है।

यह किसी पैरोट के पिंजरे की फोटो है।

यह फोटो सत्यलक्ष्मी गोल्ड कमुनी मल्टीपर्पस फंगक्शन हॉल के बाहर की फोटो है जिसके बाहर गुब्बारों से--